और इसमे कुछ छड़ लगे हुए हैं।

इसमें से दो आदमी गड्ढे के ऊपर खड़े हैं।

जहाँ तीन व्यक्ति खड़े हैं।

इसमें सेब संतरा पपीता --

बैट्स एडिडास एसएस टोन है।